इस चित्र में एक बुक सेंटर दिखाई दे रही है।

एवं एक पुरुष बैठकर और एक खड़ा होकर बना रहा है इस चित्र में बहुत से एडजस्ट फैन है।

इस चित्र में एक पेड़ भी दिखाई दे रही है।

एवं इस चित्र में सीसीटीवी कैमरा भी दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में बड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा है।

महिलाए भी कुर्सी में सफेद और ब्लू रंग की कवर लगी दिखाई दे रही है।

मंदिर के ऊपर दो कलस दिखाई दे रहे हैं।

एवं इस चित्र में लाल और काले रंग की मेट भी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में स्टील की पाइप दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें एक सफेद लाल एवं पीले कलर की काउंटर दिखाई दे रही है।

चित्र में एक हेल्मेट दिखाई दे रही है इस चित्र में एक पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक पुरुष दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहे है जो कि बहुत ही सुंदर बैलून से सजाया गया है ।

एवं शीशे के अंदर लाइट भी जल रही है।

इस चित्र में एक बेड पे दो तकिए दिखाई दे रही है।

चित्र में हमें एक टेबल दिखाई दे रहा है।

इस क्षेत्र में बहुत सारे फूलों के माला दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में गॉर्डन भी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें एक पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक नगर निगम पार्क दिखाई दे रही है।

इस चित्र में पिलर भी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें स्टील की पाइप दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक स्कूल दिखाई दे रही है।

इस चित्र में बहुत से पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।